यह एक चित्र है चित्र में बहुत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है और बहुत सारे लोग--

यह एक चित्र है चित्र में एक पैंग नजर आ रही है।

यह एक चित्र है चित्र में बहुत सारी बिल्डिंग और होटल नजर आ रहे हैं।

और नीचे हरियाली है और साइड में बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं और ऊपर आसमानी नजर आ रहा है।

बैंक नजर आ रही है एस _बी _आई --

और लोग खाना खा रहे हैं और--

ये एक चित्र है चित्र में दुकान है दुकान पे बहुत सारी चीजें--

ये एक चित्र है चित्र में--

एक घर बना हुआ है और उसके अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है मार्क्स लगा के--

बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं और पेड़ में--

ये एक चित्र है चित्र मे बहुत सारे लोग खडे हुए है।

और एक कार खड़ी हुई है दो एक्टिवा खड़ी हुई है एक लड़का जा रहा है।

ऊपर छत पे कील ठोक रहे हैं।

चित्र में दुकानें लगी हुई है।

बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और एक सामने--

और एक लड़का बैठा हुआ है --

चित्रों में एक शोक है।

बहुत सारे हाल रखे हुए हैं।

चित्र में बहोत सारी बिल्डिंग बनी हुई हैं।

और वाइट कलर की पुती हुई हैं ।

एक लड़का नीचे बैठा हुआ है।

और नीचे पर कच्ची जमीन है हरियाली लग रही है तो एक टीवा खड़ी हुई--

यह एक चित्र है चित्र में बहुत बड़ा ग्राउंड है।

एक कमला रखा हुआ है।